इस तस्वीर में मुझे एक मैनेजर बैठा हुआ नजर आ रहा है।

सामने पर एक बड़ा सा बैनर भी लगाया हुआ है।

इस तस्वीर पर मुझे एक ऑफिस नजर आ रहा है।

और उसके पीछे बहोत सारा सजावट भी दिखाई दे रहा है।

और छत भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक दुकान नजर आ रहा है जिसके अंदर ए_सी और वैक्यूम क्लीनर रखा--

ये बहुत सारा मोबाइल भी दिखाई दे रहा है और सामने पर एक छोटा सा टी_वी स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे झरना झरता हुआ नज़र आ रहा है।

मुझे इस तस्वीर पर बहोत सारे लड़कियां दिखाई दे रहा है।

सामने पर एक कुत्ता भी दिख रहा है।

और खुला आसमान भी नजर आ रहा है।

तस्वीर पर मुझे स्टेज नजर आ रहा है जिसके ऊपर दो लड़कियां नृत्य करता हुआ दिखाई दे रहा है।

उसके पीछे आईना भी नजर आ रहा है।

और कुछ इंसाने भी दिख रहा है।

तस्वीर पर मुझे तीन इंसान काम करता हुआ दिखाई दे रहा--

इस तस्वीर में मुझे एक गांव नजर आ रहा है।

सामने पर एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

काला रंग का ताला भी नजर आ रहा है।

उस लड़की का बाल का रंग काला रंग है।

तस्वीर पर मुझे एक पार्क नजर आ रहा है।

इसके अंदर एक इंसान ब्लर सा शकल लेकर खड़ा हुआ है।

सूर्यास्त भी दिखाई दे रहा है।

कुछ परछाई भी नजर आ रहा है।

वो ढलता हुआ सूरज भी दिखाई दे रहा है।